सफेद दिखाई दे रहे हैं जिसमे टमाटरों पर कुछ पे दाग दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे एक मेला टाइप का दिखाई दे रहा है इसमें झूले लगे हुए हैं।

म प्लाई के शिफ्ट बाई डिजाइन किये गए हैं स्पीकर की सुविधायें लगी हुई हैं।

यहाँ पे एक एक फोल्ड हैं कॉस्मेटिक फूल दिखाई दे रहे हैं ये एक महिला खड़ी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर एक नीम का विशाल वट बृक्ष दिखाई दे रहा हैं आस पास बहु मंजिला इमारते भी दिखाई दे रही है एक सीढ़ी लगी दिखाई दे रही हैं।

आसपास हरियाली के लिए काफी व्यवस्था दिखाई दे रही है थर्ड में भी कुछ लाईटें जल रही हैं।

यूकी बंद है अभी और आ सफेद --

यहाँ पे एक ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है काफी ज्यादा लड़के खड़े हुए है पास में बहुमंजिले इमारतें दिखाई दे रही है एक डिब्बे लगाने के लिए पो पोलो का घोड़ा उस साइड खड़ा हुआ हैं।